इस मुक्ति धाम का नाम मुक्ति धाम विकास समिति दिखाई दे रहा है।

इस बस के अंदर बहुत सारी कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

इस झूले में एक छोटा बच्चा झूला झूलता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक स्कूल नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

इस रूम में एक पलंग भी दिखाई दे रहा है।

इन सातों ने कृष्णो वाले कपड़े पहने हुए है।

यहां पर कुछ फर्नीचर्स का सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक मॉल दिखाई दे रहा हैं।

इस मॉल में बहुत सारी दुकानें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे एक फर्नीचर की शॉप दिखाई दे रही है।

इस ऑफिस में सोफे तथा सेन्टर टेबल रखी हुई दिख रही है।

इस कॉलेज का नाम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था --

इस ग्राउंड में शादी वाला पंडाल लगा हुआ दिखाई दे रहे हैं।

इन शॉपों का नाम रिंकू ऑटो इलेक्ट्रीशियन जनता बैटरी --

इस फोटो में मुझे एक पानी का झरना दिखाई दे रहा है।

इस सलुन के शॉप में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं।